इसमें एक पुराना मार्ग दिख रहा है।

इसमे एक पुरानी स्मार्क बनी हुई है जो की काफी पुरानी दिक रही है इसके पीछे --

तीन सिलेंडर रखे हुए हैं इनके पीछे पर्दा लगा है लेफ्ट साइड मे एक टेबल रखी हुई है।

एक खंभा है जिससे बिजली के तार खींचे हुए है एक छोटा -सा मकान है ।

स्मारक की कुछ इंटे पीले कलर कि है --